आसमान साफ और नीला है।

दुकान के बाहर लोग बैठे हैं।

कुछ घर देखे जा सकते हैं कुछ पेड़ देखे जा सकते हैं।

दुकान के बाहर एक हरे रंग का डस्टबिन देखा जा सकता--

यह तस्वीर किसी बच्चे की है बच्चा फूलों में पानी दे रहा है पानी पाइप से दे रहा है पाइप का रंग काला है।

बच्चे ने लाल रंग का टी शर्ट पहना हुआ है फूलों का रंग लाल है।

इस तस्वीर में एक नदी देखी जा सकती--

इस तस्वीर में एक दुकान देखा जा सकता है दुकान किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान का है।

पीले रंग के छत देखे जा सक --

इस तस्वीर में एक कप देखा जा सकता है कप नेसकैफे कंपनी का है कप में कॉफी भरी हुई है।

इस तस्वीर में दो टेंट हाउस देखे जा सकते हैं टेंट हाउस लकड़ी के बने हैं।

वह दोनों के बाहर एक एक लाइट लगी हुई है।